इमारत के बीच में हम देख सकते हैं की छोटे-छोटे पेड़ --

चीजों को छूते हुए दिखाई दे रही है ओर एक पुरुष नजर आ रहा है।

यह एक चर्च नज़र आ रहा है।

यह एक पाढ़शाला नजर आ रही है।

और हम एक बड़ा गेट भी देख सकते हैं और उन बैनरों में हिन्दी में कुछ लिखा गया है।

रेल की पड़रिया नजर आ रही है।

यहाँ पर हम देख सकते है कि कई सारे मोटर गाड़ी नजर आ रही है।

ऊपर बादलों की भी छाया गिरती हुई दिखाई --

एम.आई और कई सारे लोग नीचे की तरफ --

गुलाबी रंग की और काली रंग की चप्पल पेहनी है।

यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति जोकि बैठा हुआ है।

खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पर हम देख सकते हैं की एक पुरुष खड़ा हुआ है। जिसनें नीले रंग की पैन्ट और सफेद रंग की शर्ट पहनी है।

दुकान नज़र आ रही है। एक व्यक्ति जोकि खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और उसने मास्क पहना हुआ है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मोटर गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है। वहाँ पर चार लोग नजर आ रहे हैं।

तरती हुई नजर आ रही है।

उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता ओर सफेद रंग की पैंट पेहनी हुई --

पीछे हम देख सकते हैं बड़े --